जो है अपने अपने प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं और--

बहोत ही अच्छे परदे लगे हुए हैं और यहां पर बैठने के लिए कुर्सियां है।

और बैठने के लिए जो है सोफे बहुत ही अच्छे से डिजाइन किए है।

गुलाबी सफेद कई प्रकार के गुब्बारे लगे हैं लाइटिंग भी लगी है ऊपरी लाइट लगी हुई है लाइट्स --

और गाड़ियां बहुत सारी है आल्टो है।

और एक औरत पीछे बैठी हुई है कुर्सी पर--

ये जंगल से एक घने जंगल से यवी ।

और फर्श भी यहां पर टाइलो से लग अ जो है बनाया गया है।

और ये शूटिंग कुछ चल रही है यहां पर यहां पर--

और सामने काउंटर पर एक लेडी है बैठी हुई और दो लेडिज यहां पर आयी हुई है कुछ अपने फार्म भरवाने--

मिल है ये इसके जो है पेट पर--

एक का कार वॉश सेंटर दिख रहा है यहां पर एक का गाड़ी जो है धोने के लिए लाई गई है।

बहोत ही ज्यादा बहोत ही बड़ी बड़ी मात्रा में जो है यहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं।

फोटो ले रहे हैं जिनमें से एक औरत ने--

छोटी छोटी प्रोडक्ट्स में दिख रहे है दवाईयां हैं ये कुछ--

और बहोत मात्रा में यहां पर मछलियां बेची जा रही है।

और यहां पर बहोत सारे दुकानदार हैं शॉप्स हैं।